और वो रेड कलर से सो हो रहा है।

ग्राउड़ दिखाई दे रहा है जिसके सिल्क बिलकुल बीच से एक रोड जा रहा है टाइल वाला और ग्रास लगी हुए है साइड -साइड में--

मुझे एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसके अ बीच से साइड से होते हुए और रोड जा रहा है एक जो की टाइबर रोड है और उस जो जमीन है जमीन पे कुछ घास उग रही है और पेड़ उग रहा है।

यहाँ मुझे दिख रहा है कुछ अ स्ट्रीट फ्रूट अ लोकेशन --

मुझे एक अऽऽ वाटर पार्क टाइप कुछ दिखा दे रहा है जिसमें अऽ लोग अऽ स्केटिंग वगैरा कर रहे है एक पानी भरा हैं।

कपड़ों से और खंभे दिख रहे हैं और एक बिल्डिंग हैजो जिसकी में बात कर रहा था वह बिल्डिंग टू डिफरेंट कलर से मिलकर बनी है एक ब्लू और एक--

यहाँ मुझे दिख रही है एक बिल्डिंग जो की क्रीम कलर से पेंटेड है और उसकी जो विंडोज है वो ऑरेंज कलर से पेंटेड है।

और जिसका मिडल एरिया है बिल्कुल बीच वाला वो है आ स्का-स्काई ब्लू कलर से जिसपे कुछ लिखा हुआ है वाइट कलर से।

और उसके ठीक पीछे मुझे दिखाई दे रहा है मुझे एक गेट जिसमे की जाली टाइप मे कुछ हैग्रीन कलर से वो पैनटेड है पूरा गेट और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन टाइप दिख रहा है डिस्प्ले टाइप दिख रहा है कुछ बटन्स भी मुझे दिखाई दे रहे है।

और बीच में दिख रही है एक बिल्डिंग जो की वाइट कलर से पेंटेड है उसमे बहुत सारी विंडोज़ भी है।